इस चित्र मे एक बस खड़ी हुई है। और उसके बाहर बहुत सारे आदमी और औरते खड़ी हुई है। एक आदमी अपने कमर पे हात रखा हुआ है।

एक भगवन का चित्र है जिसमे भगवन की स्थापना की गई है और ये जो स्टेचू बना हुआ है। इसके आजु बाजु भी छोटे छोटे भगवान की मूर्ति बनी हुई है और ये बिलकुल बीच में आजु बाजु की मूर्ति है।

एक बडासा तलाब दिख रहे है जिसपे पेड़ लगे हुई है। आसमान दिख रहा है। आसमान--

सफ़ेद कलर का है और पानी में हर चीज़ की परछाई दिख रही है।

एक आदमी हरे कलर की जैकेट पहना है और एक आदमी ऑरेंज कलर की और पूरे मे मिट्ठी का ढेर पड़ा हुआ है।

ये एक चित्र है जिसमे दो बसे और एक ऑटो खड़ा हुआ है और तीन आदमी दिख रहे है एक बस के ऊपर टु ईंटो टु ए_सी स्लीपर कोच लिखा हुआ है।

एक जाकेट एक शेरवानी अलग कलर की है जो ब्राउन --

इसमें दस से ज्यादा स्टिल के गिलास है। जो की सिल्वर कलर के है।